ये एक फिल्ड है। फिल्ड में एक घर बना हुआ है छोटा सा जो वाइट् कलर से पेंट है और पेपर व लगा हुआ है पानी टंकी भी है। यहाँ पे सभी लोग क्रिर्केट वगेरा खेल रहे हैं सभी बच्चे लोग आये हुए हैं। धुप निकला हुआ हैं।

ये एक दुकान है जिसका नाम गृहस्ती है। यहाँ पर एक सारा सामान मिलता हैं खाने पीने से लेकर आ वो लगाने जैसे तेल शैम्पू ये सब हो गया सारा चीज मिलता हैं और एक ये बड़ा दुकान है अंदर में --

यहाँ पे रोड बना हुआ है टू लाइन्स का जो साइड में पार्किंग भी बनाया हुआ है जहाँ पे गाड़ी लगी हुई है साइड में इधर पे फील्ड जैसा है दिखाई दे रहा है यहाँ पे --

उसके बाद बहोत बड़ी फीलड है। किनारे में गांव बसा हुआ है। एक साइड में जो काफी जनसंख्या में घर बनी हुई है यहाँ पे --

ये एक हॉल है। हॉल जो है वाइट् कलर से पेंट है। यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं। प्लस का मार्कस लगा हुआ है ईसा मसिह वाला और यहाँ पे एक लाडिसे दो जेंट्स भी बैठे हुए हैं।